स्टेचू टाइप की बोहोत सारी मूर्तियाँ रखी हुईं है। एक के ऊपर एक रखी हुईं हैं।

नदी बहोत (बहुत) बड़ी दिख रही है। नदी के पीछे कुछ पेड़ --

यह एक फोटो नजर आ रही है फोटो के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस --

उसके अंदर दो तीन आदमी बैठे हुए है जो उसे चला रहे है।

यह एक सेलिब्रेशन चल रहा है किसी चीज का जहां पर गणेशजी की मूर्ति दिखाई दे रही है। स्टेज सजा हुआ है।

तंबू भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है यहा पर इसके पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

एक कूड़ा घर नजर आ रहा है जिसमें बोहोत सारा कचरा दिख रहा है। एक बैल का स्टैचू है। एक --

सारे आदमी भी हैं। वह आदमी रथ में बैठा हुआ है। रथ फूलों से सजा हुआ है। कइ तरह के --

फीसों की दुकान है जहां पर आदमी फिश बेचने के लिए खड़ा हुआ है।

के आकार का कुछ बना हुआ है जिस से वॉटर्फॉल हो रहा --